पीओ है ए_टी_एम है यहाँ पर रुपये निकालने कि मशीन है और एक बोर्ड लगा हुआ है एक शीशा लगा हुआ है यहाँ पे एक आदमी हेलमेट को पकडे खड़ा है।

एक आदमी एक लड़की है वो अपनी अटैची को लेकर जा रही है और एक विंडो लगी हुई है एक ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है यहाॅं पे उम्म्म काफी अच्छा है यहाॅं पे बोर्ड और शिक्षा --